हम लोग मालों से कपड़े खरीदना पसंद करते है। वहाँ पे हमें अच्छे दामों में अच्छे कपड़े मिलते है।

योगा करने से लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें बीमारी नहीं होती।